और पर देखो इन के दोनों की तरफ हाथी का मुहॅं की तरह एक चित्र बना हुआ है।

हेलो गाइस जैसा की हम यहाँ पर देख सकते हैं की ये एक परचूने की दुकान है।

यहाँ पर एक बहोत से पेड़-पौधे भी यहाँ पे लगे हुए हैं बहोत से पेड़-पौधे भी --